build molecules के इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेगे: database से अणुओं को import करना
rotate zoom इन और zoom out करना
panel पर अणुओं को बनाना
force field set अप करना और geometry को उपयुक्त बनाना
बांड की लम्बाई बांड कोण डीहाइड्रल कोण नापना
fragment library दिखाना
dna अणु और peptides बनाना
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux os version 1404 avogadro version 111 और एक कार्यकारी इंटरनेट कनेक्शन
इस tutorial का अनुसरण करने के लिए आपको chemistry यानि रसायन शास्त्र का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए avogadro डाउनलोड करने के लिए कृपया प्रदर्शित लिंक का उपयोग करें sourceforge net/projects/avogadro
मैंने पहले से ही avogadro downloaded कर लिया है
avogadro खोलने लिए dash home पर click करें
search bar में type करे avogadro
application को खोलने के लिए avogadro icon पर click करें
chemical structure database से xylene अणुको importing करके शुरू करते हैं
अणु के import के लिए हमे कार्यकारी internet connection की आवश्यकता होगी
file menu पर click करें import पर जाएँ
एक submenu खुलेगा
fetch by chemical name चुनें
chemical name dialog box खुलता है
प्रदर्शन के लिए मैं search box में xylene type करुँगी
ok button पर click करें
अब हमारे पास panel पर xylene अणु है
अब panel पर अणु को rotate हैं
tool bar में navigation tool पर click करें
अणु पर cursor रखें
mouse के बाएं button को दबाएंऔर खींचें
ध्यान दें direction arrows drag को इंगित कर रहे हैं
अणु को translate करने के लिए mouse के दाहिने button का उपयोग करें और खीचे खींचें
संरचना को zoom in और zoom out करने के लिए mouse के पहिये को scroll करें
अब सीखते हैं कि अणु को कैसे बनाते हैं
अणु को बनाने के लिए tool bar में draw tool icon पर click करें
draw settings menu में हम निम्न देख सकते हैं
यदि आप संरचना में hydrogens नहीं चाहते है तो adjust hydrogens check box को uncheck करें
element drop down सूची तत्वों की सूची दिखाती है
एक अलग window में पूरी periodic table दिखाने के लिए other पर click करें
window को बंद करने के लिए close x पर click करें
अब panel पर aniline की संरचना बनाएं
element drop down सूची से carbon का चयन करें
single bond order drop down से single का चयन करें
panel पर click करें
6 carbon परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला बनाने के लिए drag और drop करें
double bonds दिखाने के लिए bond order drop down से double का चयन करें
benzene संरचना प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक बाँड्स पर click करें
अब aniline की संरचना पूरी होती है
element drop down सूची से nitrogen का चयन करें
bond order drop down से single चयन करें
संरचना के किसी भी एक carbon परमाणु पर click करें और खींचें
build menu पर जाए और add hydrogens का चयन करें
अब हमारे पास panel पर anilineकी संरचना है
एक स्थिर रचना प्राप्त करने के लिए panel पर aniline संरचना को उपयुक्त बनाने की ज़रूरत है
उपयुक्त बनाने के लिए tool bar में auto optimization tool पर click करें
बायीं तरफ autooptimization settings menu दिखता है
force field drop down सूची पर click करें mmff94का चयन करें
छोटे कार्बनिक अणुओं को उपयुक्त बनाने के लिए सामान्यतः mmff94 का उपयोग किया जाता है
start button पर click करें
उपयुक्त बनाने के लिए ये कुछ सेकंड्स लेगा
optimization settings को बंद करने के लिए stop पर click करें
अब aniline की bond की लम्बाई कोण और डीहाइड्राल कोण को नापते हैं
tool bar में click to measure icon का चयन करें
दूरी नापने के लिए किसी भी दो क्रमागत carbon परमाणुओं पर click करें
कोण नापने के लिए किन्हीं तीन क्रमागत परमाणुओं पर click करें
डीहाइड्राल कोण नापने के लिए किन्हीं चार क्रमागत परमाणुओं पर click करें
नापी हुई values panel पर नीचे दिखती हैं
file सेव करने के लिए fileऔर save asपर click करें
save molecule dialog box खुलता है
file का name aniline cmlलिखें
स्थान desktop चुनें और save button पर click करें
new window खोलने के लिए new icon पर click करें
avogadro software में fragment library का उपयोग करके जटिल अणुओं को बनाने की सुविधा है
build menu पर जाएँ
insert पर जाएँ और fragment विकल्प का चयन करें
insert fragment dialog box खुलता है
हम विभिन रासायनिक संरचनाओ की cml files वाले folders की सूची देख सकते हैं
उदाहरण के लिए alkenes folder खोलें
folder की विषयवस्तु देखने के लिए folder पर double click करें
2methylbuta13diene cml का चयन करें
insert button पर click करें
dialog box बंद करेने के लिए close पर click करें
panel पर 2methyl13butadiene की संरचना दिखती है
इसे सामान्यतः isoprene कहते हैं
हम isoprene का उपयोग करके बहुत से प्राकृतिक उत्पाद बना सकते है
अणु अब चयन mode में है
अचयनित करने के लिए ctrl shift और a कीज़ को एक साथ दबाएं
उदाहरण के लिए मैं vitamin a और natural rubber दिखाऊँगी जो isoprene उपयोग करके बनाये गए हैं
vitamin a और natural rubber
मैं isoprene को एक कोने में translate करुँगी
build menu पर click करें insert पर जाएँ और fragment का चयन करें
macrocycles folder में नीचे जाए; खोलने के लिए double click करें
porphin fragment का चयन और insertपर click करें
dialog box बंद करें
porphyrin fragment उपयोग करके हम जटिल रासायनिक संरचनायें बना सकते है जैसे chlorophyll और vitamin b12
chlorophyll
vitamin b12
avogadro उपयोग करके जटिल अणु जैसे dna और peptides आसानी से बनाये जा सकते हैं
new icon उपयोग करके एक नई window खोलें
एक dna अणु को insert करने के लिए build menu पर जाकर insert पर जाएँ और sub menu से dna/rna पर click करें
insert nucleic acids dialog box खुलता है
dna/rna builder drop down से dna का चयन करें
चार nucleic acid bases buttons की तरह दिखते हैं
nucleic acid अनुक्रम चुनने के लिए buttons पर click करें
आप acids का अपना खुद का अनुक्रम चुन सकते हैं
प्रदर्शन के लिए मैं a t g c a t g c का चयन करुँगी
nucleic acids के चयन का अनुक्रम sequence text box में दिखता है
bases per turn drop down में a चुनें 5 चुनें: जो कि base पेयर्स पर helix की संख्या है
strands में single चुने और insert button पर click करें
dialog box बंद करने के लिए close पर click करें
अब हमारे पास panel पर एकल स्ट्रैन्डेड dna अणु है
संरचना को zoom out करें और panel के बीच तक खींचें
panel पर dna अणु को अचयनित करने के लिए ctrl shift और a कीज़ को एक साथ दबाएं
हम insert menu में peptide विकल्प उपयोग करके एक peptide अनुक्रम भी बना सकते है
new window खोलने के लिए फिर से new icon पर click करें
build menu पर जाकर insert और peptide तक नीचे जाएँ
insert peptide dialog box दिखता है
amino acids button पर क्लिक करके peptide अनुक्रम के लिए amino acids का चयन करें
प्रदर्शन के लिए मैं निम्न क्रम में चयन करुगी glycine glyvaline valproline pro और cystine cys
sequence text box में चयन का क्रम दिखता है
insert peptide button पर click करें
insert peptide dialog box को बंद करें
panel पर peptide श्रृंखला दिखती है
panel पर peptide को अचयनित करने के लिए ctrl shift और a कीज़ को एक साथ दबाएं
आप अपनी पसंद के amino acids का चुनाव कर सकते हैं और peptide अनुक्रम बना सकते हैं
अब सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
database से अणुओ को import करना
rotate zoom इन और zoom out करना
panel पर अणु बनाना
force field set अप करना और geometry को उपयुक्त बनाना
bond की लम्बाई bond कोण डीहाइड्राल कोण नापना
fragment library दिखाना
dna अणु और peptides बनाना
एक असाइंमेंट के रूप नियत कार्य में निम्नलिखित amino acid रेसिड्यूज़ का उपयोग करके protein अनुक्रम बनाएं
uffफ़ोर्स field उपयोग करके geometry को उपयुक्त बनाएं
image को cml file की तरह सेव करें
nucleic acids: augc उपयोग करके rna का अनुक्रम बनाएं
mmff94 force field उपयोग करके geometry को उपयुक्त बनाएं
image को cml file की तरह सेव करें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
अच्छी bandwidth न मिलने पर भी आप इसे download करके देख सकते हैं
हम spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और प्रमाण पत्र देते है कृपया हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
यह tutorial जया द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद